मेरे सामने एक बहोत बड़ा हाल है उसके अंदर एक सैलून खुला हुआ है और सैलून में चेयर्स पड़ी हुई और सैलून का समान पड़ा हुआ है।

और काफी अ घास वगैरा भी है पेड़ पौधे हैं और वहां पे पत्थर भी काफी है पानी के अंद--

और उनके अ ग्राउंड में पेड़ पौधे भी काफी अलग है बच्चों ने व्हाइट और पिंक कलर की ड्रेस --

बाहर सड़क पे काफी खिलौने वगैरा लगे शॉप्स वगैरा लगी हुई है कई लोग अ साइकिल पे मोटरसाइकिल पे और कई पैदल यात्रा में आ--

मेरे सामने एक बहोत बरा ग्राउंड है जहां पे बच्चे और बड़े अ हॉकी का मैच खेल रहे हैं।

मेरे सामने एक बहोत बड़ी शॉप है और वहां पे काफी सामान बॉक्स के अंदर रखा गया है।

इधर उधर की तरफ आ रहे हैं सामने बिल्डिंग बनी हुई है लोहे का शेड बना हुआ है वहां पे एक आदमी जिसने गले पे एक परस डाला हुआ है और अपनी आंखों पे ऐनक भी डाली--